ये पिछे एक लड़की दो लड़के खड़े डी_जे हो बजाते हुए नजर आ रहे हैं।

के पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े दिखाई दे रहे हैं।